इसकी दीवार सफेद रंग से पुती हुई है। यहाँ पे एक पाइप भी लगा है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसकी --

बड़े-बड़े खंबे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मुझे एक चोटी दिखाई पड़ती है जो भूरे रंग की है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये एक इमारत है जिसपे पंडित दीन उपाध्याय लिखा हुआ है।

लाल रंग का कलर है। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो कि स्टील का दिखाई पड़ता है। यहाँ पास में ही एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये इक ईमारत है। ये ईमारत चर्च है। चर्च को सुंदर तरीके से सजाय गया है जो बहुत ही सुंदर आकर्षक व मनमोहक लग रहा है।

यहाँ पर सफेद व भूरी कलर की सीढ़ियाँ हैं।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

जोकि सफेद कलर का है। इसके बाहर एक साइकिल खड़ी है। सड़क का रंग ग्रे है।

यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जोकि हरी पट्टी का है।

यह एक प्राथमिक भवन है तथा प्राशासनिक भवन भी दिखाई पड़ता है साथ में।

जिनका रंग काला है एक कार दिखाई देती है जोकि ग्रे कलर की है दूर एक --

का रंग आसमानी है तथा फर्श का रंग सफेद है।

तथा यहाँ पर भूरे रंग का द्वार बना हुआ है दूर-दूर खिड़कियां बनी हुई हैं जोकि जालीनुमा है। फर्श पर एक जालीनुमा आकृति बनी हुई है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मुझे एक लंबी सड़क दिखाई पड़ती है जिसका रंग ग्रे है। यहाँ पर सफेद कलर की दो कार खड़ी हुई है।

जिनको एक शेप दिया गया है। एक आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद कलर की जैकेट पहनी हुई है।